और यहां पर के तीन कंप्यूटर रखे हैं जो के तीन ही कुर्सियां हैं और यहां पर तीन ही व्यक्ति बैठेंगे जो के-कि आईडिया के सिम निकालने में या फिर आईडिया के कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम में उसकी मदद करते हैं।

और जो कि बहुत ही ज्यादा खुबसूरत बड़ा पार्क भी लग रहा है।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

क्या बोलते हैं उसको बड़े ग्राउंड का तस्वीर है और उसके बराबर में जो कुछ व्यक्ति किराएदार रहते हैं एक कॉलोनी है जिसमें के सारे ही किराएदार रहते हैं और सारे ही स्टेट से बाहर के लोग हैं।

जो हम तस्वीर देख रहे है इस तस्वीर में हम देख रहे हैं कि एक इंजीनियर फिर या एक मैकेनिक जिसके मशीन को अपने वर्कर्स को सिखा रहा है या फिर इसका कोई उद्घाटन कर रहा है या फिर --